बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है और ग्राउन्ड मे हरियाली है और सामने बिल्डिंग्स बनी है।

कपड़े लगे हैं और पास मे एक पेड़ है और सामने एक सुंदर मोर बना --